हेलो देख सकते है ये बस स्टेशन है और यह काफी देख सकते है और इसमें ये बच्चे और इसके पापा यहाँ पे खड़ा है और इधर बच्चे लोग कुछ-कुछ ले रहे है देख सकते हैं।

ब्लैकबोर्ड भी टंगा हुआ है और अभी आज ट्यूशन फ़िलहाल छुट्टी है शिवरात्रि के कारण इसीलिए देख सकते है यहाँ काफी लोग जबरदस्त दिखाई दे रहे काफी--